यह कोई स्कूल की ग्राउंड लग रही है।

कुर्सियां रखी हैं एक सोफा भी रखा है।

ऊपर एक लाल रंग का बैनर है जिसपे लिखा है केंद्रीय विद्यालय नंबर वन ।

येह एक करयाने की दुकान लग रही है यहां पर एक टेबल लगा हुआ है जो थोड़ा ब्राउन रंग का है सामने छोटी सी शर्ट्स बनी--

अह ब्लैक रंग का पजामा और काले रंग के शूज पहने हैं।

सभी बच्चों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं।

यहां पर कुछ स्टीकर लगे हुएं हैं जैसे--

यह एक करियाने की दुकान लग रही है।

सेल्फ में कई सारा सामान पड़ा हुआ है।